यहाँ पे सामने देखने से लगता है कि कोई पार्क हो बैठने की जगह हो तो यहाँ पे बहुत सरे पेड़ है दिख रही है जो हरे कलर में है।

यहाँ पे सामने से बादल दिखाई दे रहे है जो सफेद कलर में दिख रहे है और यहाँ पे सामने बहुत सारे पेड़ लगे हुए है और नीचे भी पेड़ लगे हुए है छोटे बड़े जो हरे कलर में दिख रहे है।

यहा पे बहुत सारे बुके और फ्लावर्स रखे हुए है गमले राखे हुए हैं और इन में वाइट कलर के फुल है।

यहाँ पे सामने से बादल दिखाई दे रहे हैं जोकि ब्लू स्काई और व्हाइट कलर में दिख रहे है और सामने बहुत सरे पेड़ भी है जोकि हरे कलर में है।